बैठा जो नीले रंग का शर्ट है और लाल रंग की कुर्सी है एक फ़ोन रखा है जो सफ़ेद रंग की है।

नीले रंग की ये कांच बना हुआ है एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जो लड़के खड़े हुए है जो ब्लेजर पेहने हुए है।

कपड़े पहनाए गए हैं एक लड़का खड़ा है जो काले रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है जो पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है सफ़ेद और नीले रंग की --

एक चप्पल पहने हुए है काले रंग की चप्पल पहनी हुई है।

हरी पत्ती है बोरे रंग की पत्ती है एक आदमी औरत खड़ी है जो पानी दे रही है पौधों को।

एक छोटा सा मूर्ति बैठा हुआ है जो हरे रंग की है दीवाल का रंग सफ़ेद है सफ़ेद और नीले रंग के आसमान हैं हरी पत्तियां हैं।

और एक आदमी खड़ा हुआ है जो पेन चेक कर रहा है सफ़ेद रंग का शल्ट पहेना हुआ है बुक स्टोर है जो की बहोत सारी बुकें रखी गई हैं।

पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सफ़ेद रंग के और पीले रंग के साड़ी पहने हुए हैं सफ़ेद रंग के शर्ट पहने हुए हैं दीवाल है जो सफ़ेद रंग का है।

एक आदमी खड़ा है जो सफ़ेद रंग का औ सफ़ेद रंग की साफी लपेटा हुआ है।